कुछ बास के डंडो के ऊपर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर और यहाँ पे बहुत सारे जन दिख रहे हैं और पीछे केले के पत्ते भी हैं। और एक बड़ा-सा फेन भी है औ --

जैसे की यहाँ पर आप उनको दिख रहा है की उनके पास तीन गाड़ियां खड़ी है| उनके पास एक इंसान है गाड़ी के पास और पीछे ही बॉउन्ड्री है और गेट है ब्लैक कलर का उसके अंदर हॉस्पिटल टाइप है।

वहाँ पे कुछ है खाने-पीने का सामान मिलता है और बोहत सारी है वैसे दुकान और जहाँ पेड़ भी है और खंभे है और लाइटिंग भी लगी हुई है।

एक रोड है रोड के ऊपर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

और एक आदमी ने रेड कलर का बैग और ग्रीन कलर की हुडी और लोअर पहन रखा है जूते और एक और बाइक है उसने स्कार्फ़ बांध रखा है।

यहाँ पे बोहत सारी बुक मिलती है अलग-अलग टाइप की सब्जेक्ट की | यहाँ पे सब लोग खरीद रहे है बुक और बा अ-बोहत सारी लेडीज भी है और बाइक खड़ी है।

व्हाइट कलर की ड्रेस और टोपी लगाए है और एक टेबुल के ऊपर फूल र-अ-रखे गए है और एक आदमी--

और जहाँ पेड़ भी दिख रहे हैं रोड के लेफ्ट साइड में बहुत गन्दा पानी भरा हुआ है| और ग्रीन कलर की घांस है और बस खड़ी हुई है रेड और ओरेंज कलर की उसके पास ही |

फूलों की दुकान है यहाँ पे मालाएँ भी मिलती है और खुले फूल भी मिलते है यहाँ पे |

येलो और चमकीले कलर के फूल और पिंक कलर के और अ-अ कांबिनेशन में मालाएं बनी हुई है| बहुत प्यारी और काउंटर है| काउंटर के ऊपर कुछ-कुछ टोकरियां रखी है।

और पीछे खेत है उसके घर के पीछे और बहोत सारे--

हाउ दोनों तरफ बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग पे माताजी की है पेंटिंग भी ब।

एक रोड है रोड के ऊपर कुछ डी_पी लगी हुई है लेफ्ट साइड में और थोड़ी बोहोत ईंट भी रखी हुई है कुछ टीन जैसा बना हुआ है एक ईंट के पीछे और पूरा खेत है।

--और यहां पे खेती होती है और एक बड़ा सा झाड़ है और सन निकल रहा है।

एक बहुत ही प्यारा फव्वारा लग रहा है और जिसमें नीचे कुछ प्लेटे जैसी हैं उसके बीच में वाइट साइड लाइटे है लगाई गई है वहाँ पे |